यहां पर फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर--

यह एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है यहां पर सोफे भी दिखाई दे रहे--

लोग यहां पर आवागमन करते हुए दिखाई दे रहे--

यह एक दुकान दिखाई दे रही है।

चारों ओर हरियाली भी नजर आ रही है पास में बैठने की भी उचित व्यवस्था--

बहुत ही अच्छे खिलौने दिखाई दे रहे--

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

चर्च में ईसाई अपनी भक्ति करते है।

जहां पर गुब्बारे दीवारों पर लगे हुए दिखाई दे रहें --

फुटबॉल्स के अलावा स्पोर्ट्स के और भी सामान दिख रहे हैं।

साथ में कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी नजर आ रही है।

यहां पर एस_बी_आई ए_टी_एम दिखाई दे रहा--

एस_पी ए_टी_एम के बाहर लोग लाइन मे खड़े हुए अपना इंतजार कर रहे हैं।

यहां पर बाइक्स की रिपेयरिंग की जाती बहुत ही अच्छी दुकान ये है।